इस तस्वीर में भारत जनता पार्टी का कार्यालय दिखाई दे रहा है।

चित्र में कार्यालय का साइन बोर्ड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है।

जिसमें एक टेबल और एक कुर्सीयां नजर आ रही है दाईं ओर एक दुकान दिखाई दे रहा है जहां कई सामान दिखाई दे रही है।

दुकान के बाहर कुछ मेनू बोर्ड भी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जिसमें दो झोपड़ियां नजर आ रही है।

इस तस्वीर में एक बंगलो नजर आ रहा है।

बंगलो का दीवार नीले रंग का है और छत टीन की है।

कमरे की दीवारें हल्के और नीले रंग में रंगी हुई है।

जिसके पास कुछ लोग खड़े हैं या चल रही है उनमें से एक व्यक्ति बस पर चढ़ रहा है।

नदी के किनारे पत्थर और कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है।

सामने एक पीली रेलिंग भी दिखाई दे रही है।

उस व्यक्ति का कंधा और सिर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक पुल की रेलिंग दिखाई दे रही है।

दुकान के बीच में एक काउंटर जैसा बना हुआ है जिसमें सामान बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

उसके हाथ में काले रंग का मोबाइल है।

उसके पीछे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक लंबी सी पुल नजर आ रही है।